रंगोली है और इसका कलर ग्रीन है और ए रेड कलर है वाइट कलर है। इसमें रंगोली बनाया जाता है। उसकूल और और पार्क में मनाया जाता है रंगोली। कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो रंगोली बनाना चाहिए।